आप देख सकते हैं यहां पर जगह जगह में--

इस पिक्चर में एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

यह लोहे से बना हुआ है पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे है।

जिसमें इसके शॉप में हम बहोत सारी चीजों को देख सकते हैं।

आप इस पिक्चर को भी अच्छे से देख सकते है।

इसमें यहां पर शेल्फी लगी हुई है।

साथ में ही यहां पर गीलीले लगी हुई है आप देख सकते है--

आप इस पिक्चर में देख सकते हैं।

तीसरे बोर्ड में जन जन सेवा मेडिकल स्टोर लिखा है।

यहां पर एक एस_बी_आई बैंक है।

जिसमें अपने हाथों में भी जूते पहन रखे है।

और साथ में यहां पर लड़ियां भी लगी हुई है।